जहाँ में हरा हरा घास सब हो अगल बगल में छोटा छोटा और पतला पतला पेड़ सब भी ह ।

बगल में दू-तीन आदमी मास्क लगा के साइड में इंतजार में है नंबर नंबर जे लेल कइय हमरो नंबर आए तो हमु जाएब।